पेपर लोग भी दिखाई दे रहा है इसमें और उसमें जो है फ्लोर जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है।

इस शीशा में जो है वाइट कलर का पेपर चिपका के दिखाई दे रहा है।

में पीछे में जो है पेड़ भी दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर में--

यह जो है क्लासरूम है और उसमें जो बहुत सारे बच्चे लोग दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म पहनते हुए।

इचमे पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

ये जो है शोरूम है स्कूटी और बाइक का इसमें बाहर में जो स्कूटी वाइट कलर का दो ठो रेड कलर का दो ठो करके दिखाई दे रहा है और सामने इसमें बाइक भी दो ठो दिखाई दे रहा है बाहर में।

आगे मे जो श्री वैष्णो लिख के दिखाई दे रहा है।

इसमें जो ये मशीन दिखाई दे रहा है और ये मशीन जो है रेड कलर और ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है।